जिसकी मशीन एक गड्ढे में --

बहोत सारी त्रिपाल से घिरी हुई लकड़ी दिख रही है आस-पास में --

काला रंग का जैकेट पहने हाथ में बैग लिए आगे की तरफ आ रही है।

पास में एक जिसु के आदमी भी सादे रंग --

मुझे एक चित्र दिख रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि वो एक शॉप है।

टंगे हुए है और उस कैलंडर में बहोत सारे छवि है।

प्रोडक्ट भी है जो देखने में अच्छी --

किनारे मे दो नौके खड़े हैं जिसपे --

एक औरत ने अपने गोद में बच्चे को लिए --

यही पास में दो आदमी हैं।

पत्थर के कुछ टुकड़े गिरे हुए हैं।

शर्ट पहनी है और आर्मी कि पैंट --

मुझे एक चित्र दिख रही है मानो ऐसा प्रतीत हो रहा कि वो एक दवाखाना है।

बाहर में दो आदमी सीट पर बैठे हैं। एक दूसरे से बात --

कर रहे हैं। एक आदमी सफेद कलर का शर्ट और --

मुझे एक चित्र दिख रही है मानो ऐसा प्रतीत हो रहा कि वो कोई --

वो कोई धर्मशाला है और --

एक ने दोनों पैर उठा के हरे कलर के शर्ट पहन रखा है।

जिसपे दो बोट लगे हुए हैं और कुछ --

मुझे एक चित्र दिख रही है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है --

जो बैंगनी और ऑरेंज क --

मुझे एक तस्वीर दिख रही है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है --

कुछ आदमी खड़े हैं एक औरत --

ये कोई रेस्टुरेंट है।

एक लड़का काले कलर की शर्ट --

टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पेहनी हुई बैठी है। एक औरत --

मुझे एक दिश्य दिख रही है।

कलर की कुछ पाठ है।

और बहुत सारे वाटर झूले है।

मुझे एक दिश्य दिख रही है।

और पतिया हरि-हरि दिख रही है।

अनेक प्रकार की हैं।